यह काफी अच्छा सुन्दर मनोरम दृश्य है बहुत अच्छा स्मारक है ये केम्पस है।

किसी भी तरीके का परिधान आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। दाम कम फैशन हर दम लिखा हुआ है। स्लोगन काफी अच्छा है सुन्दर है भी बाजार नाम का यह एक मॉल है।

यह एक बहुत सुन्दर दृश्य है मंदिर है मंदिर के सामने एक ठेला लगा हुवा है जिसमें गुटका अ और आधी बेटल पान बिकते हैं।

और ये एक सुंदर सा बगीचा है काफी सुंदर-सुंदर फुल उगे हुए है घास उगे हुए हैं हरियाली छाई हुई है काफी सुंदर मनोरम दृश्य है ये।